और सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो कुछ सामान ले रहा है और इसके सामने एक पेड़ भी लगा हुआ है।

और उसके सामने कुछ गाड़ियां खड़ी है।

ये बिल्डिंग पिंक कलर की है।

जाने के लिए रास्ता बना हुआ है फुटपाथ और आदमी बेंच पे बैठा हुआ है।

दो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं।

तस्वीर है घर के आंगन की--

काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एक गेट खुला हुआ है।